इहा अच्छा-अच्छा क्रीम से फेसवाश भी लगाथे।

इहरे ऑटो इहा साधन बहुत अच्छा हे जैसे कि इहा कहु- कहु ला जाय बर अच्छा हे औउ तो और इहा झन मनसे मन बैठ सकत हे।